साइड में यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है जिसने शर्ट पहन रखा है बलू और उसने टॉवल डाल रखा है पीछे यहाँ पर गैरेज दिखाई देगी गैरेज में समान रखा हुआ है पानी की टंकी है पिंक कलर की।

यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है एक लड़की है जिसने ग्रीन कलर का सूट पहनकर रखा है और व्हाइट कलर का दुपट्टा डाल के रखा हुआ है।

इस इमेज में हमे एक बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया गया है जिसमें केक रखा हुआ है ऑरेंज येलो और ब्लू कलर का इसमें थोड़ा व्हाइट कलर भी है डेकोरेशन है जिसमें पिंक कलर के बलूनस लगे हुए हैं।

इसके अलावा यह पर टायर्स यह पर डालने वाले सारे सामान दिखाए गए है पीछे यह पर जाली लगी हुई।

और इसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए है इस कलर में दूसरा लड़का है जिसने भी सेम यही पहना हुआ है और पीछे यहाँ पे बैलूनस की डेकोरेशन है बलूनस में पर्पल और येलो कलर है।

और एक लेडिज जिसने पिंक कलर अ ग्रीन कलर का और पिंक कलर का यहा पर स्टॉल डाल रखा है और ग्रीन कलर का सूट पहन रखा है ।

एक लड़का हैजिसने पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पे एक लड़का है जिसने टी-शर्ट पहन रखी है और नीचे पैंट पहन रखा है और एक उसके पीछे एक लड़की है जिसने ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहन रखा है यहां पे एक दीवाल है जिस पे --

यह दृश्ये एक हॉस्पिटल का है जिसमे बहुत सारे बेड रखे हुए हैं और यहां पे एक नर्स है जिसने एक व्हाइट कलर का जैकेट पहन के रखा हुआ है।